पेर हय इधर नाली हय नाडी नाली पिला कलर से रंगल हय उधर खेत पेर हय पानी हय ।

पेड़ के बहुत अंदर तक गहराई हई पेड़ का पेड़ पेड़ का पत्ता उम हरा है।

दुवार हाय बड़का हरा हरा से पूरा रंगल हय और पोस्टर ब्लू कलर के--

घर हय हरा कलर के घर हय उ सीडी हय लाल के रंगल एको पोर पोस्टर हय पोस्टर हरा कलर के ऊपर लिखल लाल कलर के हय।

एगो पोल हय पोल निचा लाल ऐ पोल वाईट कलर से रंगल हय एगो पेड़ है बहोत बड़का पेड़ हय घना है क पता हरा हय क डाला काला हय अव बहोत बड़का--

घर हई घर में व्हाइट कलर के अथे हई बोल आका पूरा कुर्शी लाल हई और पूरा पंडाल ते बोल अय और पंडाल के ऊपर काला टेप हय ।

पेड़ हेय पेड़ के सामने गाड़ी हेय गाड़ी के चक्का काला कलर के हेय नम्‍बर प्‍लेट उजला हेय एगो सिलेंडर के गाड़ी है सेलेन्‍डर लाल कलर के हेय खेत हेय।

खेत बहुत बड़का हेय खेत में एगो हरा कलर के पत्ता हेय एक पोल हेयपोल बहुत बड़का हेय।

एगो घर हेय वहाँ पर लाल कलर के पोस्टर है ला लाल कलर वा व्‍हाइट रंगल हेय व्‍हाइट के घर हेय शीशा काला के हेय वहाँ पर पेड़ है बहुत बड़का पेड़ है।